यहां पे बहुत सारे लोग खड़े भी हुए हैं और एक चेयर भी है जिसका कलर ऑरेंज है यहां पे कुछ लोग खड़े हुए हैं और यहां पे कुछ पल्ली भी दिखाई दे रही हैं।

और यहां पे कुछ पेपर्स भी दिखाई दे रहे हैं यहां पे एक तालाब दिखाई दे रहा है जिसमें पानी भरा हुआ है यहां पे रस्ता भी दिखाई दे रही हो पहाड़ी भी दिखाई दे रही ऊपर आसमान भी दिखाई दे रहा है और कुछ पेड़ पौधे भी दिखाई दे रहे है।

बड़ा आसमान भी दिखाई दे रहा है और रोड भी दिखाई दे रहा है यहां पर कुछ पेड़-पौधे भी दिखाई दे रहे है बस की शीट भी दिखाई दे रही है।

एक कॉलेज दिखाई दे रहा है इसकी दिवार का कलर व्हाइट और रेड है यहाँ पे बहुत सारे बाइके भी रखी हुई दिखाई दे रही है।